अभी उ गेट बंद है अभी आदमी नहीं आये हैं।

और पता नहीं जानवर इसमें हे भी या नहीं है।

ये एक क्रिश्चन का है लेडिज है की जेन्स है अपने बच्चो को गोद में लिए हुए है खड़े है।

आदमी यहाँ पर एक भी नहीं है अभी।

पार्क में अभी आदमी घूमने के लिए कुछ देर में कुछ सब आदमी आ --

आज तो कुछ नहीं है यहाँ पे।